और कुछ पेड़-वेड भी दिख रहे है ।

हरा-हरा दिख रहा है और यहाँ पेड़-वेड भी लगे हुए है गौ माता जी है और घास को खा रहे है।